बहोत बड़ा पहाड़ है पहार के नीचे लोग सेल्फी ले रहे हैं घूमने आए हैं पहाड़ का नजारा देखने आए पहार के अंदर गुफा बना हुआ है ऑफिस बने हुए हैं।

गाय के बगल में एक आदमी खड़ा है उसे खाना दे रहा है।

ये एक दुकान है सामने काउंटर है ये एक कंपनी है ऑफिस है।

सामने दो बड़ी बड़ी खिड़कियां है ऐ_सी लगा हुआ है छत पे पंखा चल रहा है लाइटे जल--

तीन लोग काले चेयर पे बैठे हुए हैं छत पर लाइटिंग लगी हुई है आज इस ऑफिस का वेलकम है और गेट पे एक रिबन बंधा हुआ है।

बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं एक लड़के ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई है पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है पीछे व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स हैं।

सामने स्कूल का बोर्ड बना हुआ है एंट्री गेट है पीछे ऑरेंज कलर का स्कूल है सामने एक आदमी खड़ा है बॉन्डरी पे।

हैं एक टावर जैसा बना बीच में इटे बिछी हुई है हरी घास है रेलिंग लगा हुआ है।

यहां पे लोग घूम रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं लेडीज घूम रही है।

एक कमरा है आदर्श गेस्ट हाउस लिखा हुआ है पिंक दीवार है रसिया टंगी हुई है एक ब्लैक कलर पंखा लगा हुआ है।

नीला शटर है एक बहोत बड़ा बक्सा रखा है।

एक दुकान है यहां पे महरानी ज्वेलर्स लिखा हुआ है।

बगल में रैक बना हुआ है बहुत सारी टीवीयां रखी हुई हैं।